ऐछे मार्बल के पत्थर मे छोटे छोटे फ्लावर नजर आ रहे है।

बाहर बहोत बड़े एक ग्राउंड फ्लोर दिखाई दे रहे हैं जिसके साइड में एक बड़े पेड़ लगे हुए नजर आ रहे हैं।

ए_सी लगी हुई नजर आ रही हैं खिड़की लगे हुए हैं।

सामने एक लैपटॉप दिखाई दे रहा है।

सीढ़ी दिखाई दे रही है सिल्वर कलर की।

लाल रंग का टी शर्ट पहने खड़ा हुआ नजर आ रहा है।

सामने यह होटल नज़र आ रहा है लाल कलर के सोफे दिखाई दे रहे है ग्रे कलर का सोफा नज़र आ रहा है।

एक बड़ा पेड़ नजर आ रहा है।

पिंक कलर की फुल सजे हुए दिखाई दे रहे हैं बड़े बड़े पेड़ नजर आ रहे हैं।

पोस्टर टंगा हुआ दिखाई दे रहा है।

यहां बहोत सारी मशीने नजर आ रही है पेट्रोल पंप की--

रोड में एक कार जाता हुआ दिखाई दे रहा है बड़े बड़े खंभे नजर आ रहे हैं।

व्हाइट कलर का शटर दिख रहा है जो फूलों से सजा हुआ है ऑरेंज कलर की लाल कलर की बहोत सारी कुर्सी नज़र आ रहे है।